ये फोटो में हमें एक दुकान दिख रहा है एक स्टेशनरी शॉप दिख रहा है।

यहां पे एक ब्लू कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ऊपर हमें बादल दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमें एक रिसॉर्ट जैसा दिख रहा है।

कुछ लोग अपना सर झुका के बैठा है।

आगे में हमे बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमे बड़े बड़े गच्छे दिखाई दे रहे हैं।

ये कपड़ा का दुकान है यहां में बहोत ज्यादा कपड़ा लगा हुआ है।

दो तीन बैग भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का दीवार है ऊपर बैग भी लगा हुआ है।

ये फोटो में हम लोग को एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक गच्छी दिखाई दे रहा है।

एक कागज दिखाई दे रहा है।

एक इंसान साइड में बैठा है यहां दो टेबल दिख रहा है।

आगे हमें दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।

मै मैगी के बहुत सारे पैकेट दिख रहे हैं।

घर की छत व्हाइट कलर की है हमें अंदर एक टेबल दिख रहा है।

आगे एक गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी ब्लैक कलर का है।

बहुत सारी इंडिया का झंडा लगाया हुआ है।

न तो बहोत ज्यादा घास दिखाई दे रहा है।

यह होटल में बहुत ज्यादा मिठाई दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें बहुत सारे गिलास दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो में हमें बहोत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है।

बहुत नया मार्क्स पहना है।

एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है पीछे कुछ औरत बैठे हुए हैं।

यहां जाने का एक गेट है यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

ये फोटो में हमको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ये बिल्डिंग एक ऑफिस दिख रहा है।

ऊपर सुंदर लाइट दिखाई दे रहा है यह पूरा लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पे एक वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है।

ये फोटो में हमें एक ऑफिस दिख रहा है।

ये ब्लू कलर का टेंट है ये ग्रीन कलर का टेंट है।